है। इनकी पूजा होती है। ये जो व्यक्ति खड़े है यह फोटो खिचवा रहे है। इनके पीछे एक लड़की है और इनके साइड में एक और है।

और यहाँ पल इनका स्टैंड लगा हुआ है और जैसे की यहाँ पर सफ़ेद कलर हुआ हुआ है।

तीन-तीन व्यक्ति खड़े है जो कि यह बुके खरीद रहे है। और यहां पर काफी बड़ी दुकान हैं। यहां हर तरह की बुक मिलेगी। पागल है क्या।